यहां आसपास इसके पानी-पानी पड़ा है पेड़-पौधे लगी है बहुत सारे--

शेरे शिवारी कोचिंग सेंटर है जोकी यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं और चदरों का शीट डला है छोटा सा ठेया टाइप बना है यहाँ पर इसके आसपास पेड़ लगे हैं और अंदर घर बना है मीटर लगा है पर्चे वगेरा लगे हैं।

एक बोहोत बड़ी नदी है जिसके बीच में डंडे लगे हुए है डंडों की आड़ लगी हुई है।

चेयरें लगी हैं ब्लैक कलर की एक साथ बहुत सारी यहाँ बोर्ड लगे हुई हैं उनपे ब्लू कलर में कुछ लिखा भी है लाइटें लगी हैं खिड़की लगी हैं यहाँ पे।